जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक छवि प्रस्तुत की गई है उसमें एक बड़ा-सा पेड़ है पेड़ के नीचे नीचे एक हिंदू मंदिर है पास में ध्वजाएँ फहराई गई हैं।

हम्म मोर्निंग वाक अपने गार्डनिंग के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं और सुबह-सुबह का वातावरण और शाम का वातावरण यहाँ का आसपास का हाल हरियाली को देख के बहुत अच्छा लग रहा है।

यह किसी पहाड़ी पर स्थित जंगल का दृश्य है जंगल के उस पार एक नजर नग नगर नजर आ रहा है उसमें बहुत साड़ी इमारतें बानी हुई हैं।

इस चित्र को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी होटल का रिसेप्शन आ रहा है इसमें और रिसेप्शन डेस्क नजर आ रही है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जिम किसी जिम के दृश्य का फोटो है ।

इस चित्र को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी नदी के घाट का दृश्य है। घाट के उस पार बहुत सारी इमारतें बनी हुई है और बहुत ही मनोरम दृश्य नजर आ रहा है और आसमान एकदम स्वच्छ है।

इस चित्र को देखने के बाद वेसा प्रतीत हो रहा है की ये किसी क्लासरूम का दृश्य है। क्लासरूम में अच्छी तरह से लाइटिंग की वयवस्था की हुई है पंखे लगे हुए हैं सामने एक अच्छा इ ब्लाकबोर्ड लगा हुआ हैं।

इस चित्र में एक भव्य ईमारत बनी हुई है और जैसा की बोर्ड पर लिखा हुआ है ये कोई नया लेक्चर थीयेटर कॉम्प्लेक्स है और नीचे पार्किंग बनी हुई है और पास में कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक बिल्डिंग के सामने ई एक हरा-भरा वृक्ष है।